इसमें हमें यहाँ पर एक कोचिंग क्लासेस दिखाई दे रही है जहां हमे बहुत सारी चेयर और टेबल दिखाई दे रहे हमें यहाँ पर एक वाइट बोर्ड भी दिखाई दे रहा एक खिड़की भी दिखाई दे रहा दो पंखे भी लगे दिखाई दे रहे है।

कुछ घासे लगी हुई दिखाई दे रही हैतथा हमे यहाँ पर खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमे ऑटो भी दिखाई दे रही है कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर हमे घर बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य मे हमें यहाँ पर एक अकादमी दिखाई दे रही है जहाँ हमें एक लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है कुछ --